ये फोटो में हमको बहुत बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

ये फोटो में बहोत सारा इंसान दिखाई दे रहा है।

ये फोटो में हमको बहुत सारा लोहा दिखाई दे रहा है।

बड़ा बड़ा पहाड़ भी दिखाई दे रहा है।

ये फोटो में हमको बहुत बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

हमको आसमान भी दिखाई दे रहा है।

ब्लू कलर का सेंटेक्स भी दिखाई दे रहा है।

पेड़ भी दिखाई दे रहा है आसमान भी दिखाई दे रहा है।

ये फोटो मे हमको एक बड़ा सा रूम दिखाई दे रहा है।

और दुकान का बाहर में चावल बैग भी है।

छोटा छोटा ग्रास भी दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग का बाहर में एक डस्टबिन भी दिखाई दे रहा है।

रूम का अंदर बहुत सारा किसिम किसिम तरह का चश्मा भी दिखाई दे रहा है।

और ओ दुकान मे बहोत सारा जूता भी दिखाई दे रहा है।

जैसे कि बड़ा बड़ा बिल्डिंग --

पेड़ भी दिखाई दे रहा है आसमान भी दिखाई दे रहा है।

ऊपर में लाइट भी जलाया हुआ है।

ये फ़ोटो में हमको बहुत बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा चेयर लोग भी दिखाई दे रहा है।

ये फोटो मे हमको एक रूम दिखाई दे रहा है।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

ए_सी दिखाई दे रहा है ऊपर में।

अंदर में ये आई लव म्याऊं लिख के है।

पेड़ सब भी दिखाई दे रहा है। ग्राउंड का अंदर मे लाइट भी जला के दिखाई दे रहा है।